यह एक मशीन है और ये देखिए ये लड़की इसमें कुछ चेकउप कर रही है।

गाड़ी में सेल हो गई। कुछ साफ़ कर रहे और ये ऊपर टेपिंग करके लगा रहे हैं। गाड़ी का रंग रेड कलर का है --

ये देखिएगा ये पहाड़ है पहाड़ काट काट कर सुरंग बनाई गई है जिसका ये यहाँ पर जा रहे हैं सुरंग का आनंद लेने के लिए।

ईसा मसीह बने हुए है और ये कछु बोल रही है ईसा मसीह के बारे मे बह आंटी --

और देखो उधर भी अंकल जी अपने बच्चों को आराम से नीचे उतार रहे हैं और वहाँ पर बच्चे सरक कर नीचे आ रहे है काफी अच्छा पा पार्क बना है और काफी बड़ा भी है ये --

वेलकम स्मार्ट वर्कशॉप या अंदर में ये गाड़ी में कुछ खराबी आ गयी थी साइड से कितना सुधरने के लिए सामान भी रखा हुआ है। साइड पर और यह भैया डिक्की के ऊपर खड़े हुए है साइड पर --

ये देखे ये एक महल है महल के अंदर का फोटो है ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसमे देखिएगा--

ये देखिएगा यह झालम रोड पर स्थित है कामख्या देवी मंदिर ये हमारा गांव है और यहाँ पर भू भू मंदिर काफी बड़ा है और यहाँ पर घूमने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। काफी अच्छा काफी --

ये काफी अच्छी लगती है और देखिये न कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया था।